पेड़-पौधे भी बहुत सारे लगे हुए हैं एक तालाब देखने को मिल रहा है जहां पे बहुत सारे बोट लगी हुई हैं और पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं और आसमान खुला है।

दी गई हुई पिच्चर मे हमें एक डैम नज़र आ रहा है जहाँ पर अ बोहोत सारा पानी बह रहा है यहाँ पर पानी हमें ब्राउन कलर का दिख रहा है।

दी गई पिक्चर में हमे एक जीम दिखाए जा रही है जहां पर हमें जिम के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे दिखाई जा रहे जो की ब्लैक कलर के है हमें यहां पर बहुत सारे कांच भी नजर आ रहे हैं और हमें दीवार नजर आ रही है जो की येलो कलर से प्रिंटेड है।

ऊपर की तरफ हमे अ बहुत सारे पत्र भी नजर आ रहे है साइड मे हमे एक पार्क नजर आ रहा है जहाँ पे हमे व्यक्ति भी नजर आ रहे।

ये मंदिर एक पहाड़ पर छोटे से पहाड़ पर बना हुआ है।

दी गई हुई पिक्चर में हमें एक घर में एक अ जिम नजर आ रहा है जहाँ पर हमें जिम के बहुत सारे टूल्स नजर आ रहें हैं अ जो की ग्रे और रेड कलर से पेंट हैं यहाँ पर हमें एक पिंक कलर की दीवार नजर आ रही है। यहाँ --